ये दोनों बाढ़ के पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं।

ये तस्वीर किसी कार्यालय की लग रही है।

यहां में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

यहां कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं।

यहाँ में हमें कई सारे पेड़ कुछ घर और कुछ पोस्टर्स भी नजर आ रहे--

ये तस्वीर एक टायर की दुकान की है।

उसके आगे में एक क्रूस नजर आ रहा है।

पीछे की ओर कुछ पेड़ दिख रहें हैं।

इस तस्वीर में एक जन फोटो खींच रहा है।

यह एक बिल्डिंग जैसी लग रही है।

बेसिकली सामने में एक स्लाइड दिख रहा है।

यहां में एक बड़ा व्यक्ति औरत और एक बच्चा नजर आ रहा है।

इस घरों का छत हरा कलर का दिख रहा है।

आसमान में बादल भी हैं।

हमें यहां कुछ पेड़ और कुछ इंसान भी नजर आ रहे हैं।

यहां में एक सी_सी_टी_वी भी लगा हुआ है।

इस दुकान मैं आपको कई सारी चीजे मिल जाएगी।

सामने की तरफ एक छोटा सा रास्ता भी है।